यह एक फ्लावर की दुकान है जिसमें पीले कलर के फ्लावर लाल कलर के फूल सब है।

कुछ गुब्बारे ऊपर लगे हुए हैं कुछ नीचे डले हुए हैं ए एवं एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यह किसी फूलों के बाजार की फोटो है इसमे बहुत सारी फूलों की दुकाने है एवं बहुत सारे लोग है जो फूल खरीद रहे हैं।

यह फोटो एक बस की है जिसके अंदर बहुत सारे लोग है।

एवं उस बस के ऊपर भी बहुत सारे लोग है और उसमे अभी भी बहुत सारे लोग चढ़ रहे है उसके अंद--

जिसमें हर तरह का सामान उपलब्ध है एवं इसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

नीले कलर की टीशर्ट पहने हुए है उसने कैप भी लगाया है एक व्यक्ति येलो कलर की टीशर्ट मे है उसने कैप भी लगाया है एक व्यक्ति रेड कलर की टीशर्ट मे है इस शॉप की सजावट बहुत अच्छी है।

यह फोटो किसी नदी की है जिसमें यह सब महिलाएं छठी मईया की पूजा करने के लिए आई है।

एवं एक व्यक्ति उसके बाल काट रहा है एवं इसमें एक सरस्वती जी की फोटो भी लगी हुई है।